और कुछ बाइक आया है बाइक से आये है अपना --

ग्रीन क अ सॉरी रेड कलर में पर्दे लगाए गए हैं और ढेर सारे लाल --

यह एक अ-अ दुकान है जिसका नाम है फैशन फेयर यहाँ पे --

और ये प्राचीन मंदिर लग रहा है और इसका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क काफ़ी मेहनत पे हुआ होगा और काफ़ी डिजाईन इसका जो है अच्छे --

और यहाँ पे देख सकते हैं की बहुत अच्छा से पेंट हैं साफ-सफाई हैं ।